यहा पर एक बड़ासा इस्टेज बना हुआ है यहा पे बहुत सारी लडकीया डांन्स करती दिखाई दे रही है डीजे लगा हुआ है।

इसमे बहुत सारी खिडकिया बनी हुई है।

यहा पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है पूरा पिंक पिक साइड दिख रहा बीच मे बहुत सारी हरी-हरी घास लगी है।

और बोहत ही डिजाइन से बनाया हुआ है यहा पे एक ब्लू कलर --

यहाँ पर एक बड़ासा ग्राउंड दिख रहा है जहा पर बहुत सारी हरी हरी सी घास लगी हुई है।

यहा पर एक ग्राउंड है जहा पे बहुत सारे हरे-हरे घास लगे है कुछ छोटे-छोटे पौधे लगे है जिनमे कुछ --

लंबा एक सड़क जैसा दिख रहा है पतलासा है और अगल बगल मे छोटे छोटे पौधे लगाया है हरा हरा उसमे पत्ता लगा है बहुत ही बड़ा बड़ासा पेड़ है हरा हरा पूरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर बनाया है जो बहुत ही पथरों से बना हुआ है डिज़ाइन से बनाया है।